है और बहुत सारे लोग आये हुए हैं और छबीस जनवरी मना रहें हैं।

और इसका बहोत साडी गेट है और बहोत सरे गुन नजर आ रहे हैं और बोहोत सुन्दर दिखाई दे रहे हैं और बोहुत सुन्दर है |

यह घोड़ा से रथ बना हुआ है और इनकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है जो बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी है। इसके बगल में बहुत सारे बिल्डिंग हैं जो बड़े-बड़े हैं।